ये सामने एक गार्डन दिखाई दे रहा है गा --

पूल सीमेंट के सीमेंट के वो वो सीमेंट से बना हुआ है।

बाइक खड़ी हुई है।

यहाँ पर बहुत सारी दीवाल दिखाई दे रही है।

जिसमें बोर्ड लगा हुआ है जिसमें फर्स्ट इंडियन फेमस मार्ट लिखा हुआ है।

यह पर एक गेट जाने द्वार अंदर जाने का गेट बना हुआ है।

ये काँचवे का यहाँ पर द-दरवाजा लगाया हुआ है यहाँ पर --

ये सामने गाय दिखाई दे रही है।

ऊपर दो फेन चल रहे हैं जो ब्लैक कलर के हैं यहाँ पर लाइट लगी हुई है जो सफे सफेद कलर की दिखाई दे रहीं है।

यहाँ पर लोहे की पाइप और लकड़ी की पाइप दिखाई दे रहे हैं गिट्टी भरी हुई है जो ब्लैक कलर की है।

यहाँ पर बाजू में चैन का गेट दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है लोहे का है।

यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ है फेन लगा हुआ है यहाँ पर एक बुड लगा हुआ है।

यहाँ पर ये देखने में दिन का सिन लग रहा है।

ये जो टाइल्स लगी हुई हैं |